स्पोर्ट्स का समान दिख रहा है यहां पर हमें--

और ऊ नीचे हमें वाहेगुरु का एक निशान बना हुआ भी दिख रहा है एक--